इस इमेज में एक मुर्गा मुर्गी दिखाई दे रहे हैं और गमले में पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है और एक लाल कलर का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में शादी चल रही है जहां पर तीन चार औरते फोटो खिंचवाते दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में एक सड़क दिखाई दे रही है और यहां पर एक सफेद रंग के कार चलती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में कुछ दुकाने दिखाई दे रही है और बाहर सफेद रंग की कार खड़ी हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोगों की भीड़ नजर आ रही है।

केला सामने यहां पर कुछ कार और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक जे_सी_बी दिखाई दे रही है और नीचे गड्ढा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है और बाहर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है और कुछ बिल्डिंग भी यहां पर नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है और कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक मॉल दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ पैकेट्स भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर फिसल पट्टी दिख रही है और एक लड़की फिसलते हुए नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुछ लड़कियां योगा करती हुई दिखाई दे रही हैं।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

इस इमेज में देखियेगा यहां पर पब्लिक स्कूल दिखाई दे रही है और वो गेट भी नजर आ रहा है।

इमेज में देखिएगा यहां पर साड़ी रखी हुई है और बहोत सुंदर कलर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर ऑफिस दिखाई दे रहा है और कुछ फ़ाइलें रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर सामने कुछ कारे सामने लाइन से खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक इमेज में देखिएगा सामने डाकघर का काउंटर दिखाई दे रहा है और दीवारों पर कैलेंडर नजर आ रहा है।